इसमें हर तरह के फूल लगे हुए हैं नीचे में मट्टी है।

यह एक जीवन हेल्थ केयर का दृश्य है।

और बड़ा सा फील्ड के साइड में बहुत सारा गमला में करके फूल लगाया गया है।

और नीचे में घास भी है जो की सूख गया है।

यहां पे शीशे का बना हुआ है ये गेट ।

एक टेबल भी रखा हुआ है बाहर में।

और उसी कलर से एक और बाहर में भी पूरा रोड बना हुआ है साइड में रेलिंग ।

यह एक फल दुकान का दृश्य है।

यह एक ऑफिस का दृश्य है यहां पे रेड कलर का चेयर लगा हुआ है।

एक ब्लू जैकेट पहने हैं एक ब्लैक एस_बी_आई का पर्पल कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

और बाहर में दो बाइक खड़े है।

यह एक बाहर का दृश्य है यहां पे एक बड़ा सा फील्ड है।

पीछे में बहोत सारा बाइक खड़ा है व्यक्ति लोग भी खड़े हैं रोड पे।

और एक कर वॉश के लिए गया है।

और मैं यहां पर कई सारा डोरेमोन का कैटलॉग लगा हुआ है।

यह एक बाहर गार्डन का दृश्य है।

साइड में जाली दिया हुआ है स्टील से बनाके ।

इस साइड में वाइट कलर का भी बना हुआ है इसमें बल्ब दिया हुआ है।

और चेयर पर बैठे हुए चेयर के ऊपर वाइट कपड़ा है।

यह एक रूम का दृश्य है।